सब त्योहार का आनंद ले रहे हैं मुकुट पहने हुए हैं।

कुछ छोटे कुछ बड़े वृक्ष हैं फिर कुछ जंगल भी हैं।

ड्राम रखा हुआ है उसका ढक्कन ऊपर से रखा हुआ है यहाँ पर एक तराजु --

समय-समय पे यहाँ मस्जिद मे ह इसमें नमाज पढने आते हैं।